मरीजों के लिए बेड लगाए गए हैं यहां पे साफ सफाई --

यह ऊध्यान है ऊध्यान के चारों तरफ क्यारियां बनाकर --

यहां एक जेंट्स पार्लर है यहां पे जेंट्स की कटिंग --

यहां पे काले और पीले रंग के गुब्बारे से लाइब्रेरी को सजाया गया है।

यहां एक चौकी पर बौद्ध बुद्ध भगवान की मूर्ति लगाई गई है।

पीले और गेरुआ रंग से पोता गया है यह बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है।

यहां पे टैटू रिमूवल सीनियर कस्टमाइजेशन फ्री और हेयर ट्रीटमेंट --

और चारों तरफ सीमेंट से दीवारों पर पॉलिश की गई है।